अरे अरे देखो तो कैसे बॉटल्स फेंक रखी है पौधों के पास सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है पर फूल बहोत अच्छे रखे हुए हैं।

और फिर जैसे ही ट्रेन चलती है ये सारे उठ जाते हैं और दृश्य तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ऊपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है।

स्विमिंग पूल गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाने में बहोत मजा आता है न--

और छोटे तरह के बड़े तरह के अलग अलग प्रकार के गमले रखे हैं। बहोत सुंदर तरह से बनाए हुए। ये धूप में सेके जा रहे हैं।

अमित बुक डिपो यहां पर हर तरह की बुक्स मिलती है हां और ये--

यह जगह फायर ब्रिगेड एरिया की है यहां से--

अरे वाह कितने प्रकार के फल रखे हुए हैं? एक ही पर--

इधर ये कैसी मशीन है अच्छा हां इस मशीन ये तो लोडिंग कर रही है।

भारत माता की जय राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल ।

एक मंदिर है पर इसकी बनावट तो मस्जिद जैसी लग रही है।